यहां पर मुझे एक कैफे दिखाई दे रहा है जहां बहोत सारी--

यहाँ और पर एक आदमी काम कर रहा है।

रेड कलर की लाइटिंग--

मैं रेड टेप ऑनलाइन आउटलेट लिखा हुआ--

किचन बना हुआ है।

यहाँ पर मुझे बहुत बड़ी झील दिखाई दे रही है जहां पर बीच में--

यहाँ पर मुझे बहुत बड़ा गेट दिखाई दे रहा है।

और इसके पीछे एक बड़ी दीवार बनी हुई है।

यहां पर मुझे एक प्लेट दिख रही हैं।